ये खेल-खिलोने बिस रहे हैं।

ये एक गार्डन है जो की बच्चो के घुमने का है। यहाँ पे बच्चो के खेलने के काफी सामान है जैसे के रपकनी है।

और यहाँ पे --

बीस जने बैठ सकतें हैं यहाँ --

कमरे घर यानि की रूम बनी हुए हैं।